और यहाँ ऊपर एक पंखा है और दो एल.ई.डी. वाइट से लाइट है और एक चेयर भी।

और इसके समाने बड़ा सा पारक भी है और ये बोहोत सारे पेड़े भी हैं और अभी --

और यहाँ पर एक बड़ा सा एक ब्लैक बोर्ड भी है वहाँ पर एक पेड़ छुड़ाया गया हुआ है और एक वाइट कार्ड बोर्ड लगाया गया हुआ है और --

यू.पी. यू.के.पी.एस.सी. और आर.आई.एम.सी. रेलवे कटलेट सा बहुत कुछ लिखा गया हुआ है और यहाँ पर नील रंग का उम्म बॉर्ड पर --